मारुती सुजुकी लिखा हुआ है ऊपर अउर एजंसी है कार का।

बहार भी कार खड़ा है और ग्रिल लगा हुआ है सब डे नाईट काच लगा हुआ है गेट पे।

लाइट जल रहा है पंखा लगा है ऐसा लग रहा है की मुस्लिम लोक का स्टोरेन्त है।

बहुत बड़ा कौलेज है और सब पेड़ पौधे है गार्डन बहुत बड़ा है।

बहौत सारे बच्चे बैठे हुऐ हैं और एक आदमी सेल्फी ले रहा है और एक पीछे लेडीज है मोबाइल लीए है।

और यहाँ पे लाइट जल रहा है स्टार टंगा हुआ है।

और दूसरी तरफ चरम रोग निवारण केन्द्र लिखा हुआ है यहाँ पे होमियोपैथ डॉक्टर बैठते हैं और होमियोपैथ दवा देते है।

बोर्ड में लिखा है हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी कथादोम लिखा है।

सैलून है और सैलून में एक बच्चा है और ब्लू कलर का कपड़ा ओढ़ाया गया है और सर में --

काठि दो तीन लगाया गया है और एक लेडिस बच्ची बैठी है और लड़का सेल्फी मो मोबाइल से --

हाजीपुर जंक्शन लिखा हुआ है हिन्दी में और इंग्लिश में भी लिखा है उर्दू में भी लिखा है हारेपुर जंक्शन ।

जहा सड़क भी गया है और ग्रिल लगा हुआ है सब आसमान भी दिख रहा है और छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हये।

यहाँ पे दुकान है और दुकान मे झूमर टांगा हुआ है लाइट है और यहाँ पे सब कपडे का दुकान है और ये बरतन का भी दूकान है।

यहाँ पे एजंसी है और गेट काँच का है और ऊपर डे नाईट काँच है और लिखा है इंग्लिश में ए एडमियर हौंडा लिखा --

तरफ एक लाइन में सब सी कांच है और यहाँ पे कुर्सी भी रखा हुआ है सभी एक लाइन से।

घास वगेरा सब बगल में है जंगल टाइप दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

पडदा लगा हुवा है टेंट लगा हुवा है सब दो लोक बगो बगल में खड़े है।

यहाँ पे कोई तीर्थ स्थान दिख रहा है और यहाँ पे जो है बहौत सारे नाव हैं बहौत से लोग हैं आ रहे हैं जा रहे हैं।

यहाँ पे हूँ मकान है और मकान के बगल मे पेड़ है पेड़ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है और पत्ती हुई हुसमें हरी हरी दिख रही है और --

सब कुर्सी लगा हुआ है बैठने के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिनेमा हॉल है नहीं तो स्टेज बना हुआ है किसी --

और लाइट जल रहा है यहाँ पे कोई दिख भी नही रहा है।